ग्रेनाइट का बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ तो नीचे देखिए चेयर भी लगी है और जिसमें एक लड़का मोबाइल चला रहा है ब --

और यह सामने आप देखेंगे की आपको व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है पूरा और जिसमे ऊपर की तरफ लाइटिंग भी है आपको थ्री थ्री लाइट दिखाई दे रही होगी ऊपर दोनों साइड --

यहाँ पे आप देख पा रहें हैं की आपको सामने की तरफ नजर आ रहा है की यहाँ पे बहुत सारी लाइन से बाइक खड़ी है दो छे बाइक खड़ी हुई है।

यहाँ पर आप देख पा रहे है की एचडीएफसी बैंक का बैनर लगा हुआ है सामने बाइक वगेरह भी यहां पे खड़ी हुई है।

और बदल भी यहाँ पे छाए हुए है यहाँ पे।

यहां पे आप देख सकते हैं की सारे शैम्पू यहां पे नजर आ रहे हुए हैं रखे हुए आप देख सकते हैंपेन्टीन डव क्लिनिक प्लस --

और ये अदर कंपनीस के यहाँ पे शैम्पू और यहाँ पे रखे हुए हैं वन बाय वन जमे हुए ऊपर से नीचे तक।

ये देख सकते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान स्टेशनरी है और यहाँ पे देखिये एक टंकी रखी हुई है और बच्चा फुटबाल खेल रहा है यहाँ पे।

ये देख सकते है यहां पे आपको लेडीसों के समान मिल जाएंगे जो की आपको चूड़ी हो गई लिपस्टिक हो गई इयरिंग्स हो गई ये सारे आइटम आपको यहां नजर आ रहे होंगे।